बहुत सारी कुर्सी और मेजे पड़ी--

ई तस्वीर मा एक कमरा दिखाती है।

अउर कुर्सी मेजें रखी हैं।

बहुत सारा पानी निकल रहा है।

जईमा बहुकत सारी खिड़कियां बनी हैं।

और बहुत सारे बाला रखे हैं।

जेमा बहुत सारी मेजे और कुर्सी रखी है।

इ तस्वीर मां एक दुकान दिख रही है।

और एक आदमी खड़ा हुआ--

जहिमा द्वि अलमारी रखी हैं।